हरा पार्क दिखाई दे रहा है बैठने की कुर्सी दिखाई दे रही है लोहे की खम्भे दिखाई दे रहे हैं चद्दर दिखाई दे रही है पंपलेट दिखाई दे रहा है।

दे रहा है ईंट दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रही है चद्दर दिखाई दे रही --

दिखाई दे रही है ये कैमरा दिखाई दे रहा है ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

गाड़ी दिखाई दे रही है काँच दिखाई दे रहा है लाल गाड़ी दिखाई दे रही है काँच की।

दीवाल दिखाई दे रहे खम्भा दिखाई दे रहे पीला कलर दिखाई दे रहा है ।